मछली रखी है जो काले कलर कि दिखाई दे रही है | एक आदमी उसने मास्क लगा रखा है | एक औरत है जिसने कलर की साड़ी पहन रखी है और उसने कलर का मास्क लगा रखा है| --

में एक आदमी जो खड़ा है उसने सफ़ेद कलर की शर्ट नीला कलर का चड्ढा पहना हुआ है एक वो कुर्सी है गुलाबी कलर की दिख रही है।

हैं और ऊपर ओरेंज कलर के उसमे लिखा है श्री राजेश्वरी बुक --

यहाँ एक सफ़ेद कलर की कुर्सी दिख रही है यहाँ जो आदमी खड़ा है उसके हाथ में माइक है और उसके हाथ में कुछ कागज है और ऊपर कुछ पर्दे जैसी डोरी जैसी टंगी हुई है गुलाबी पीले कलर की दिख रही हैं उल्टा बने हुए कागज --